वे नहीं वो सारे कंप्यूटर कुर्सी मेज वगैरह रखे हुए हैं मेज पे फाइल्स वगैरह--

में जा रहा है गोदाम है गोदाम के अंदर बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है।

दो तीन शॉप है एक बैंक है एच_ डी_ एफ_ सी_ बैंक है अ बंधन बैंक है।

एक स्कूल है जहाँ पे बहुत सारी बसे खड़ी है यलो कलर की बसें खड़ी हैं।

अं पत्थर वो है रंग बिरंगी पत्थर वगैरा पड़े हुए हैं एक शॉप है शॉप के अंदर कंटेनर रखा है कांच का कंटेनर रखा है।

कुछ मशीनें हैं एक डॉक्टर मशीन में कुछ जांच कर रहा है डॉक्टर न्यू यूनिफॉर्म पहनी है।

एक शॉप है जहाँ पे बहुत सारे बलून लगे हुए हैं रेड कलर के यल्लो कलर के पिंक कलर के बहोत सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं।

पाई खड़ी है स्टूल वगैरा मेज वगैरा रखी हुई है।

झरने वगैरह लगे हुए है बहुत ती बड़े बड़े ऊं बड़ी बड़ी मशीन है।